अह टांगे हुए हैं और बहुत सारे कपड़े को डब्बे में फोल्ड कर के रखा हुआ है।

कुछ लोग टेंपू के पास खड़े हैं जाने के लिए और बहुत सारे--

और उस दुकान पे एक बोर्ड लगा है जिसपे मोना स्वीट केक कर्नल लिखा है।

जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह एक बहोत ही बड़ी नदी है।

सफेद कलर की एक मूर्ति है यह मूर्ती बुद्ध भगवान की है और उनके हाथों में एक प्यारा सा फूल है।

हर बार सारे लोग ट्रेन में जा रहे हैं और इसके अगल बगल में बहोत ही खूबसूरत दृश्य है यहां--

और भोजन करते हैं और भोजन का पूरा लाभ उठाते हैं।